ये देखिए एक बड़ा सा दुकान दिख रहा है दुकान के गेट पे फुल सजा हुआ हैं।

कुछ कार व्हाइट कलर का है कुछ ब्लैक कलर का भी है।

ये देखिए एक पेट्रोल पंप है।

एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

कुछ किताब रैक में रखा हुआ है कुछ नीचे में रखा हुआ है दुकान में लाएट भी लगा हुआ है एक --

बहोत सारे मजदूर भी हैं यहां पे जो काम कर रहे हैं।

हॉल में बहोत सारे पर्दा लगा हुआ है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखें लिखा हुआ हैं गोल्डेन नर्सरी --